यहाँ पे खाफी सारे लाईट जल रही हैं यहाँ पे बहुत साडी बिल्डिंग दिख रही हैं जिनके बाहर लाईट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तलाब के पास खड़े हुए हैं यहा पे बिल्डिंग पे यल्लो कलर पेंट किया गया हैं आगे बिल्डिंग पे वाईट कलर पेंट पेंट किया गया हैं ।

लेफ्ट एंड राईट साइड दोनों साइड पेड़ लगे हुए है लेफ्ट एंड राईट साइड की दीवालो पे कुछ बैनर लगे हुए है यहाँ पर गेट के अंदर काफी सारे लोग दिख रहे यहाँ बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है यहाँ पे गे गाड़ी खड़ी हुई है।

इस इमेज में हमें एक रोड दिख रहा है रोड लेफ्ट एंड राइट साइड बहुत सारी शॉप लगी शॉप्स हैं यहाँ पे आइस क्रीम का ठेला खड़ा हुआ है।

ग्रीन कलर की बिल्डिंग के ऊपर हुआ है जिसके ऊपर एक टंकी रखी हुई है पानी की यहाँ पे पाइप गया है वाइट कलर का एक मैदान दिख रहा है।

मंदिर के लेफ्ट एण्ड राइट साइड बिल्डिंग दिख रही है यहां पर गमले रखे हुए हैं जिसमे पेड़ लगे हुए है।